यहां पर ये एक फैक्ट्री दिख रही है जिसमें बहोत सारी मशीने धरी हुई हैं।

यहां पर ये मछली और बहुत सारे जानवरों के यहां पर दुकान दिख रही है।

जिसमें सफेद रंग की कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

पत्तें भी यहां पर पड़े हुए हैं।

और यहां पर एक सड़क भी बनी हुई है कच्ची।

यहां पर एक लड़का बैग लिए जा रहा है।

यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है और दो लड़के खड़े हुए है।

और यहां पर मैदान में कुछ गाड़ी गुड़ी सी लग रही जी हां देख सको।

यहां पर पीछे की साइड में स्टेज है और लाल रंग का लहंगा है।

और एक खूंटी में पैंट टंग रहे है।

जिसमें एक पेड़ पौधे लगे हुए हैं घास भी जमा हुआ है और यहां पे हिरन भी फिर रहे हैं।

टेंट लगा हुआ है और यहां पर पेड़ पौधे फूल वगैरा यहां पर लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एस_बी_आई का यह केंद्र दिखाई दे रहा--